मैदान में छोटे छोटे पोधो के चारों तरफ़ गोल गेहराव किया गया है।

इस दृश्य में हम देख रहे है एक बड़ा सा पार्क पार्क के बीच में रस्ता नजर आ रहा है।

इसके चारों तरफ़ हरी हरी घास छोटे छोटे हरे और लाल रंग के पोधे दिखाई दे रहे है।

उसपे छोटे छोटे घरो में बनाए गए है इसके अगल बगल कई वृक्ष नज़र आ रहे है।

इस दृश्य में एक चट्टान के जैसा नज़र आ रहा है इसके ऊपर दो पुतले दिखाई दे रहे है।

एक बच्चे की है और एक महिला की पुतली इसके पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

बगल में एक तीन चार मंजिलो का मकान भी दिखाई दे रहा है एक आदमी नज़र आ रहा है।

परदे के ऊपर लटकाए गए है इसमें कुछ महिलाए भी नज़र आ रही है।

आगे रास्ता है रास्तें के उस तरफ भी बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े --